जहां पर कुछ बच्चे भी हमें दिखाई दे रहे है।

यहां पर हमें एक चिड़ियाघर के अंदर का नजारा देखने को मिल रहा है।

क्रेन गेपल के टैंक को स्थानांतरित करते हुए देखी जा सकती है।

यहां पर एक महाविद्यालय का प्रवेश द्वार दिखाया गया है।

पास में एक टी_वी लगी हुई है जिसपर कुछ कार्यक्रम दिखाया जा रहा है।

आस पास कुछ छोटे पेड़ पौधे और घास फुस दिख रही है।